उसके साइड में भी एक घर में बहुत लाइट लगाए गए हैं। साइड में एक पंडाल है।

यहां पर छोटे-छोटे पौधे लगाए गए हैं।

यहां पर सामने बहुत बड़ा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

जो की बिल्डिंग के ऊपर में एक लाइट लगाएं गए हैं जो की लाल रंग का और ब्लू रंग का बिल्डिंग में रंग किया गया हैं।

बहुत बड़े बड़े नेट लगाए गए है ब्ल्यू रंग के और बांस भी लगाए गए है।

यहां पर एक ए_वन एन_जी_बी पार्लर हैं।

यहां पर भागवती फैमिली रेस्टोरेंट लिखा गया है जो की दुमका रोड देवघर के सामने है।

यहां पर एक बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है।

काउंटर भी दिखाई दे रहा है काउंटर के पीछे बैठने वाला आदमी भी दिखाई दे रहा है।

पीछे में बहुत बड़े बड़े ग़ाछ हैं।

यह एक राधा कृष्ण का मंदिर है जो कि उसके अंदर राधा कृष्ण मूर्ति भी लगाए गए हैं जो की फूल से सजावट भी किया गया है।

यहां पर बहुत सारी बोलेरो रखे गए हैं कार रखे गए हैं।

सफेद रंग का दिवाल है पीछे बहुत सारे पेड़ है।

यहां पर तरह-तरह के सामान रखे गए हैं।

चार्जर रखे गए हैं कलम रखे गए हैं केबल रखे गए हैं।

यहां पर पानी का बहाव बहुत तेज है।

लैपटॉप कंप्यूटर डी_जे विजे सब रखे गए हैं।

सामने एक आमफली आइसक्रीम पार्लर है जोकि उसका गेट पीला रंग का है।

नीचे में माजा लिखा गया है अंदर में दो लड़की खड़ी है।